जिसमे एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है इसके अगल-बगल में छोटे छोटे पेड़ पौधे और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है जो बहुत ही अच्छा प्रतिक हो रहा है।

इमेज में दिखाया जा रहा है इसमें दो गिटार है एक बेन्जो है दो ढोलक है।

इमेज दिख रहा है यह शाम के टाइम का इमेज है जो नीम सैलून लिखाया हुआ हैं।

भगवान से ही मन्नत मांग रहा है कि हमें किसी प्रकार से दुःख दर्द ना हो हमारे घर पे सब सुःख समृद्धि से रहे।

जो दृश्य देख रहे है यह बोहत बड़े जंगल का है बड़े बड़े पेड़ पौधे उगे हुये है और दो आदमी लोग यहा फोटो खींच रहे है यह दृश्य घूमने के लिए आए हुये है।

जो इमेज दिख रहा है यह चर्च चर्च है जिसमे क्रिस्चिन लोग आकार अपने देवी देवता से प्रार्थना करते है।

इसमें रेलिंग के द्वारा खंबा खड़ा हुआ है जिससे घर बनाया जा रहा है यह देख रहा है कि कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है इसके द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा--

अभी फिर हाल तैयार नहीं हुआ लेकिन यहाँ तैयार होने के कगार पे आ गया है छबाई का जो काम है यहाँ बचा हुआ है।

बहोत बड़ा चट्टान जिसको काटा तो नही गया है लेकिन काटने के जैसा दिख रहा है जो बहोत ही अच्छा दिख रहा है जिसमें इसमें मनुष्य फोटो खिंचवा रहा है खड़ा हुआ है।

यहाँ जो इमेज दिख रहा है ये छोटा- सा पूल है जो लकड़ी के द्वारा बनाए गए बनाया गया है जिसमें अनेक आदमी आवक- जावक कर रहे है इसमें दो- तीन महिला आ भी जा रहे हैं।